पांच औरते काम करती हुई नजर आ रही हैं।

यह एक खिलौनों की दुकान है इस पर बहुत सारे खिलौने लग रहे है बच्चों का एक बैट भी है।

अधिक अधिक प्रकार की और उसमें कुर्सी दिखाई दे रही है।

और तीन चार पेटी नजर आ रही है।

और एक शटर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक दुकान है जिसमें कि एक दो कैलेंडर भी नजर आ रहे हैं।

और बहुत सारे अधिक अधिक प्रकार के खिलौने रखे हुए हैं।

जिसमें की ये बहुत सारी तीन चार कुर्सी लोहे की नजर आ रही है।

और मशीनों पर ये काम कर रहे हैं।

ये एक कैफे है जिसमें कि नजर आ रहा है बहुत सारे टेबलें ।

और सामने के साइड का दो तीन कार जा रही है।

एक बुलेट एक होंडा वाली और एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

दूसरा लड़का तीसरे लड़के की टांग खींच रहा है।

धनिया भी रखा हुआ है और केले भी रखे हुए हैं।

और एक लड़की पर धुंधला सा नजर नहीं आ रहा है एक लड़के ने मास्क ओढ़ रखा है।

सामने की तरफ एक बड़ी सी जगह है।

इसमें बहुत सारे बैलून टंग रहे हैं तीन चार पंखे भी है।

और तीन अगरबत्ती लगी हुई है तीन चार और लड्डू भी रखा हुआ है।

और छे सात आदमी भी खड़े हुए हैं।

यह एक छत पर लेंटर डल रहा है।

और पीछे की तरफ बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये एक कैफी है जिसमें की लड़कियां खाना खा रही हैं।

साइड पर एक पेड़ है पीछे खेत है।

जैसे कि तरबूज संतरे पपीता अनानास और केले और सेब रखे हुए हैं।

एक काउंटर भी है और एक आदमी ने हेलमेट ओढ़ रखा है।

और इस पर सा बाहर की साइड तीन चार मोटरसाइकल खड़ी है एक साइकल खड़ी है।

यह एक बैनर है उथिम फाइनेंस प्वाइंट --

और अंदर की तरफ एक बल्ब दिखाई दे रहा है।

ये बस अड्डा है जिसपे कि एक रिक्शा वाला जा रहा है तो एक टूरिस्ट बस खड़ी हुई है।

और इन डब्बो पे लिखा हुआ है प्रकाश।